ये तस्वीर भी एक पहाड़ का है यह पहाड़ पे बहोत सारा जंगल है और ये बहोत ही ऊँचा है और इसके दूर--

दूर तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे है ये तस्वीर में और दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है।

ये तस्वीर भी एक लैब की है जिनका नाम यूनिक पैथोलोब है इसके ऊपर एक रेडसीलाइफ फ्लेग का भी बोर्ड लगाया गया है।